कुछ प्लेट दिख रही है प्लेट वाइट कलर की दिख रही है और कुछ राइस वगेरा दिख रहा है प्लेट के अंदर येलो कलर में स्पूंस रखी हुई दिख रही है काफी सारी प्लेटे दिख रही है।

ते वगेरा दिख रहे है कुछ ब्लू कलर में दिख रहे है और कुछ येलो कलर के दिख रहे है शर्ट दिख रहा है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है एक ब्लू कलर का दिख रहा है एक गाजरी कलर में दिख रहा है आस -पास में यहाँ का पेंटिंग कलर--